यहाँ बहुत सारे बहुत वैरायटी के कपड़े मिलते हैं यहाँ |

यहाँ भगवान के आगे एक बड़ा सा दिया जल रहा है।

जिस सब पे जिस के आसपास बहुत बड़े-बड़े से पेड़ हैं यह बहुत हरा भरा है |

एक सफ़ेद सा मंदिर दिख रहा है बहोत बड़ा सा --

जो की यें बोहोत सारे बच्चे आए हुए है इसमें योगा करते हुए दिख रहे है।

बहुत बड़े-बड़े से पेड़ लगे हैं जो की बहुत हरे-भरे हुए हैं यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है।